हरे रंग की पत्तियां है लाल रंग के फूल दिखाई दे रहे हैं कुछ फूल गुलाबी रंग के हैं।

सफेद और ऑरेंज रंग के डब्बे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे डब्बे है एक आदमी खंबा पकड़ कर खड़ा--